हमें यहां पे एक दुकान दिखाई दे रही है जो की भाइट कलर की है और हमें यहां पे एक लैपटॉप दो चेयर और एक टेबल दिखाई दे रहा है।

चो की बहुत बड़ा है और व्हाइट कलर का है। और हमें दूर एक मकान दिख रहा है।

और हमें कुछ छोटे छोटे पेड़ दिखाई दे रहे हैं जो कि हरे भरे हैं और हमें इसमें विंडो दिखाई दे रहे हैं।

हमें यहां पे बोहोत बड़ा समुद्र दिखाई दे रहा है जिसके अंदर जहाज खड़ी है और हमें --

और हमें यह पे बोहोत सारी गाय और बछड़े दिखाई दे रहें हैं और हमें यहाँ पे एक टीन शेड दिखाई दे रहा है।

और हमें बहुत सारी विंडो दिखाई दे रही है। हमें यहाँ का रुफ रेड कलर का दिखाई दे रहा है और हमें चार पंखे दिखाई दे रहे है।